रोड के पास में एक बिल्डिंग --

सामने दो कार खड़ी हैं जो ब्लैक --

बलून लगे हुए है रेड और येलो कलर के एक कम्प्यूटर दो कम्प्यूटर रखे हुए है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं। ऑटो के पास एक --

चाय की दुकान पे काफी सामान रखा हुआ है। कढ़ाई दिखाई दे रही है भगौने रखी हुई है।

टेबिल रखी हुई है। उ चेयर पर बैठे हैं।

पहाड़ पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। पहाड़ के बगल में --

कुछ पेड़ लगे हुए हैं हरे भरे।

जो व्हाइट कलर की है। रोड पर काफी सारी बाइकें --

काउन्टर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

जो सिल्वर कलर की है। कार के पास में काफी बाइके खड़ी हुई हैं।

जो एक जगह बंधी हुई हैं।

मैजिक जो सिल्वर कलर की है ब्लैक कलर के पइए लगे हुए ऐं।